यहाँ पर मुझे बहुत सारे बलूंस दिखाई दे रहे है यहाँ मुझे घर भी दिखाई दे रहा है बैलून से सजा है यहाँ लाल पीले गुब्बारे लगे हुए है यहाँ पर चेयर भी रखी हुई यहाँ हिरोइने की फोटो भी लगी हुई --

यहाँ पे बहोत अच्छा लग रहा है काली कलर की पिली कलर की सिलिंग मुझे दिख रही हे और यहाँ गेट भी दिखाई दे रहा है लाइट सी भी दिखाई दे रही है और फर्श भी दिखाई दे रहा है।